आप देख सकते है सामने बोर्ड लगे हुए है बोर्ड के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है उस तरफ राष्ट्रीय मोहर है।

सामने ये घर देख रहे हैं घर के पास में स्त्री मूवी का--

आप देख सकते हैं सामने बिल्डिंग है जोकि पीले कलर से पेंट किया गया है उस पर सफेद कलर की ईटे लगी हुई है ऊपर आसमान ब्लैक है।

--नीचे कुछ गड्ढे हैं छोटी-छोटी पेड़ पौधे है और यहां पर खिड़कियां है खिड़कियो के ऊपर बहुत पट्टियां लगी हुई है।

पर एक बच्चा बैठा हुआ है ये डाली पर और उसके बाल वहां पर काफी अच्छे लग रहा हैं और नीचे यहां पर काफी पेंटिंग --